ये एक शोरूम है यहां पर आप पैंट शर्ट का कपड़ा भी ले सकते हैं और पेंट शर्ट भी ले सकते हैं फॉर्मल --

ये कोई फंक्शन हो रहा है देवी देवताओं का और यहां पर देख रहे है आप कितना अच्छा बनाया हुआ है ये।

ये एक शॉप है जहां पर आप बहुत सारा सामान देख रहे होंगे बाल्टी रखी हुई है मग्गे रखे हुए हैं खाने पीने की चीजें रखी हुई ह--

ऐ_सी भी लगे हुए हैं जो ए_सी इन्हे ठंडा रखने का काम करते हैं और पंखे जो है वह देने का काम करते हैं यह बहोत ही अच्छा--

बड़ी बड़ी लाइटें भी लगी हुई हैं और दो भाई हैं एक ने हरी टी शर्ट पहनी हुई है और दूसरे ने एक लहर कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

और आप देख रहे हैं कितना अच्छा नजारा है कितना अच्छा लग रहा है ये जो धरती है नीचे की ये बहुत ही ज्यादा हरियाली दिखाई दे रही है ।

और एक लेडीज भी है और एक आदमी भी है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछ लाइट भी लगी हुई है।

और इन गांवों में घूमने का बहोत ही मजा आता है शाम के टाइम का जो मजा है।

पीले कलर के हैं हरे कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं रेड कलर के हैं एक पन्नी भी है उसमें भी बहुत सारे पड़े हुए हैं ब्लैक कलर --

आप देख रहे हैं ये एक प्रणाम है जहां पर बहोत ही रंग बिरंगा माहौल है रेड कलर के गुब्बारे हैं ब्लू कलर के गुब्बारे हैं।

कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही है एक टेबल भी रखी हुई है कुछ लाइटें भी लगी हुई है।